में बहुत सारी लीची रखी हुई है।

दीवार पर ये ड्रग्स पेन का चित्र बनाया हुआ है।

बच्चे कॉपी खोल के बैठे हुए हैं।

इस पोस्टर पे लिखा है डिजिटल सेवा एंड साइबर के--

यहाँ पर ऑनलाइन साइबर से रिलेटेड वर्क होता है।

यह एक कार्यक्रम का चित्र है।

घर के आगे एक मंदिर है। मन्दिर में स्थापित प्रतिमा का कलर गोल्डन है।

घर के बाहर एक स्टील रॉड सोलर पैनल है।

इसमें बहुत सारी किताबें भी--

रूम की दीवार पर एक कैलेंडर टंगा हुआ है।

एक व्यक्ति दुकान के किनारे खड़ा है।